चित्र में मुझे काउंटर दिख रहा है चित्र में मुझे --

दिख रहे है चित्र में लकड़ी दिख र--

पौधे लगे दिख रहे हैं और सीलिंग पर लाइटें जलती दिख रही हैं।

चित्र में मुझे कई सारी टाइल्स चमकती हुई--

चित्र में एक व्यक्ति व्हाइट शर्ट पेहना दूसरा ब्लैक --